और हमे एक जिना दिखाई दे रहा है जो की पहाड़ की ऊपर ले जा रहा है और यहा पर हरे भरे बड़े बड़े पेड़ है और छोटे छोटे पेड़ भी है जो की हरे भरे है।

और यहा पर हमे कुछ छोटे छोटे पेड़ भी दिखाई दे रहे है और एक घर दिखाई दे रहा है।

है और इनकी साइड मे छोटी-छोटी पेड़ लगे हुए है अह यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे है जो की रोड पर चल रहे है।